jmol में crystal structure and unit cell पर स्पोकन tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न करना सीखेंगे crystallography open database से cif यानि crystallographic information file को download करना
jmol में cif को खोलना
jmol panel पर unit cell और unit cell parameters को दिखाना
और विभिन्न crystal systems के crystal structures को दिखाना उदाहरण के लिए cubic hexagonal और rhombohedral
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको high school chemistry का ज्ञान होना चाहिए
और jmol window की कार्यविधि से परिचित होना चाहिए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
jmol version 12232
java version 7 और
mozilla firefox browser 350
crystal structures सात crystal systems के अंतर्गत grouped किये जाते हैं
यह table crystal systems और उनके सम्बंधित lattice parameters की सूची दिखाती है
अनेक compounds और minerals के crystals के लिए उदाहरण यहाँ सूचीबद्ध हैं
हम jmol panel पर sodium chloride graphite और calcite के crystal structures दिखाएँगे
jmol panel पर crystal structure दिखाने के लिए:
हमें एक विशेष crystal के लिए crystallographic information file download करने की ज़रुरत है
cif crystallographic इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए एक standard text file format है
cif format cif file extension रखता है
crystallography open database एक open access database है
downloadable होने वाला cif cod website पर उपलब्ध है
website the गए link से accessed की जा सकती है
अब cod database website खोलते हैं और कुछ cif files download करते हैं
यहाँ मैंने cod website खोल ली है
पेज के बायीं तरफ जानकारी अनेक शीर्षकों में विभाजित की जाती है
accessing cod data शीर्षक में उपशीर्षक हैं जैसे browse search आदि
search विकल्प पर click करें एक नया पेज खुलता है
search पेज पर हमें cif files के लिए अनेक विकल्प मिलते हैं
hints and tips link पर click करें
search पेज पर वापस जाएँ
हम cod id प्रयोग करके निम्न प्रकार से crystal structure को ढूँढ सकते हैं:
openbabel fastsearch या text box में chemical या mineral का name type करके
उदाहरण के लिए sodium chloride की cif file को ढूँढने के लिए
text box में type करें halite जो sodium chloride का mineral name है
elements box पर नीचे जाएँ
type करें symbol na sodium के लिए और cl chloride के लिए
number of distinct elements box तक नीचे जाएँ
यहाँ हमारे पास minimum और maximum elements type करने का विकल्प है
minimum box में type करें 2 यदि आप केवल दो elements के साथ crystal structure चाहते हैं जोकि sodium और chloride है
send बटन पर click करें
sodium chloride के लिए crystal structure data files के साथ एक web पेज खुलता है
cod id पर right click करें और open the link in a new tab पर click करें
यह पेज उस विशेष crystal structure से सम्बंधित विस्तृत जानकारी रखता है
database web पेज पर वापस जाएँ
archive of cif files link पर click करें जो पेज के दायीं तरफ स्थित है
screen पर एक dialog box खुलता है open with विकल्प चुनें ok button पर click करें
screen पर sodium chloride crystal के लिए अनेक cif files के साथ एक folder खुलता है
जो files आप download करना चाहते हैं उन पर क्लिक करके उन्हें चुनें
tool bar पर extract button पर click करें
अपने system पर उचित स्थान पर files को सेव करें
extract पर click करें window बंद करें
search पेज पर वापस जाएँ
अब पहले की तरह ही समान प्रक्रिया प्रयोग करके graphite और calcite की cif files download करें
अब हम jmol में sodium chloride की cif फाइल खोलेंगे
यहाँ मैंने jmol window खोल ली है
tool bar में open a file icon पर click करें
sodium chloride की cif file की location पर जाएँ जो हमने cod database से downloaded किया है
open पर click करें
screen पर sodium chloride crystal का unit cell खुलता है
unit cell crystal में सबसे छोटी दोहराई जाने वाली unit है
इन unit cells का 3 डाइमेंशन्स में स्टैक एक के ऊपर एक आना करना crystal structure का आधार बनाएगा
jmol panel पर वापस आते हैं
unit cell से सम्बंधित data panel के बायीं तरफ प्रदर्शित होता है
यह space group वर्गीकरण के साथ शुरू होता है
sodium chloride cubic lattice system में आता है इसलिए vectors a b और c समान होते हैं
angles alpha beta और gamma 90 degrees होते हैं
popअप menu खोलने के लिए right click करें
symmetry विकल्प तक नीचे जाएँ
submenu में हमारे पास symmetry elements दिखाने के लिए विकल्प हैं
हम submenu में विकल्पों को प्रयोग करके unit cells के blocks को भी दिखा सकते हैं
उदाहरण के लिए reload {1 1 1} विकल्प पर click करें
panel पर हमारे पास unit cell block है जो face center cubic lattice दिखा रहा है
display को बदलने के लिए popअप menu खोलें style तक नीचे जाएँ फिर scheme और cpk spacefill पर click करें
यहाँ panel पर हमारे पास crystal structure cpk display में है
दोबारा popअप menu खोलें symmetry तक नीचे जाएँ और reload {4 4 4 6 6 6 1} विकल्प पर click करें
यह विकल्प jmol panel पर 27 cell block loads करता है
popअप menu खोलें symmetry पर जाएँ वापस reload {1 1 1} विकल्प पर जाएँ
symmetry elements दिखाने के लिए दोबारा popअप menu खोलें
submenu में symmetry तक नीचे जाएँ और mirrorplane x z y विकल्प पर click करें
panel पर हमारे पास प्रदर्शित mirrorplane x z y के साथ cubic lattice है
अब graphite के लिए cif file load करते हैं जो hexagonal crystal system में आता है
पहले प्रदर्शित की तरह panel पर graphite की cif file load करने के लिए open a file विकल्प का प्रयोग करें
panel पर graphite का unit cell खुलता है
unit cell parameters को देखें
vectors a b के बराबर है लेकिन c के बराबर नहीं है
angles alpha और beta 90 degrees के बराबर हैं और gamma 120 degrees के बराबर है
popअप menu खोलें symmetry तक नीचे जाएँ और reload {444 666 1} विकल्प पर click करें
screen पर परमाणुओं की hexagonal lattice व्यवस्था दिखती है
display को बदलने के लिए popअप menu खोलें style पर जाएँ scheme पर जाएँ wireframe विकल्प पर click करें
उसी प्रकार मैंने panel पर calcite mineral की cif file खोल ली है
calcite rhombohedral crystal system me aata है
आप किसी भी crystal system की cif खोल सकते हैं और structure और symmetry विकल्पों का अन्वेषण कर सकते हैं
इसे सारांशित करते हैं इस tutorial में हमने निम्न करना सीखा: crystallography open database से cif download करना
jmol में cif खोलना
unit cell और unit cell parameters को दिखाना
और sodium chloride graphite और calcite के crystal structures को दिखाना
नियत कार्य में
jmol panel पर unit cell दिखाएँ और symmetry विकल्पों का अन्वेषण करें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
हम spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाते हैं और प्रमाणपत्र देते हैं कृपया हमसे संपर्क करें
spoken tutorial project भारत सरकार के एमएचआरडी के nmeict द्वारा निधिबद्ध है
iit iit टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद